और यहाँ पे सभी प्रकार की बुलेट की बाइक मिलती है और इस शोरूम के बाहर काफी शीशे लगे हुए हैं ।

और इसपे कई सीढ़ियाँ लगी हुई हैं जो कि रेड कलर का टाइल्स है ।

इत्यादि ठंडे रखे हुए है और साथ में साथ बच्चो के हगीज मिलता है और बहुत सारे प्रकार के कुरकुरे वगेरा भी रखे हुए है।

और इसके सामने ही दो पुलिस कर्मी खड़े हुए है और इसके आस-पास कुछ लोग खड़े हुए है और इसमें एक महिला है ।

और इस धान के पौधे में काफी सारे पानी भरे हुए है और इसके बगल में ही एक ताड़ का पेड़ है और इसके आगे बहुत सारे ईंटे गिरे हुए हैं ।

इस दृश्य में एक चाइना टॉउन फास्ट फूड का दुकान है जिसमें बर्गर किंग के नाम से जाना जाता है।

व्यक्ति पाठ पढ़ाया जा रहे है एवं पंडित जी इन दोनों व्यक्तियों को पाठ पढ़ाए जा रहे जा रहे है और यहाँ पे माता दुर्गा का एवं बजरंगबली का --

इस दृश्य में एक बहुत सा बड़े बिल्डिंग को दिखाया गया है जो देखने में लग रहाहै किसी बहुत बड़ी कंपनी का यहाँ पे हेड क्वार्टर है ।

इस दृश्य में एक जंगल टाइप इलाके को दिखाया गया है इसके चारो तरफ --

और इसके पेड़ के नीचे ही बहुत से कलर के पेंट किए --

दो तीन ट्रेके बनी हुई है।